फेक्टरी है फेक्टरी में देखिए काफी सारे मजदुर हैं जो लड़के काम कर रहे हैं और देखिए उधर --

दिखाई दे रहा है छोटे बना हुआ है । महात्मा मूर्ति को भी काफी अच्छी गोल्ड कलर से --

पेन्सिल शार्पनरस वगेरा मिलते हैं ।

जो कि देखिए सभी लोग ऊपर की ओर से नीचे को जा रहे है नीचे से ऊपर को आ रहे है।

और देखिये इधर पेड़-पौधे भी काफी सारे दिखाई दे रहे है उधर पे देखिये --

हॉल में काफी सारी फैंस लगे हुए है काफी फैक्ट्री जैसा दिखाई दे रहे है और उधर देखिये --

ये एक मंदिर है और मंदिर पे देखिए दो छोटे बच्चे है। एक लड़का है एक छोटी-सी प्यारी सी बच्ची है और देखिए बना हुआ है तीन-चार --

देखिये ये मीटिंग होल दिखाई दे रहा है | यहाँ पे देखिये काफी सारे लोग है । लडकियाँ लड़के --

ये बहुत बड़ा बिल्डिंग मतलब मस्जिद जैसा दिखाई दे रहा है । उधर देखिए --

लाइट्स लगी हुई है । ऊपर से डी.जे. बना हुआ है । काफी अच्छे से डांसिंग कर रहे है ।

काफी बड़ा है देखिए जो छोटे-छोटे पौधे हैं सब दिखाई दे रहे हैं उधर पहाड़ जैसा बना हुआ है देखने में काफी बड़े --

केचुआ वगेरा है इन लोगो को जीवन यापन इसी नदी में होते है।

उसके आगे दिखिए घास पूस हरा हरा दिखाई दे रहा है । काफी अच्छे से कटिंग्स किया गया है ।